और नाइट लैंप अभी से ही चालू हो गया है यहां पर एक खूबसूरत सोफा भी--

तो कोई पीले साड़ी में है सब ने अपना सर अपनी साड़ी से ढक के रखा हुआ है।